दीवार पे मुझे एक औ फोटो फ्रेम नजर आ रही है।

मुझे यहां पे कुछ लोगों रस्ते में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आसपास मुझे हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

एक बाइक ग्रीन कलर की है और बाकी ब्लैक कलर की हैं।

पीछे एक काउंटर नजर आ रहा है यहां पे आई लव कैस्टल ग्रिल लिखा हुआ है।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

गार्डन के बीच में मुझे एक छोटा सा पक्का रास्ता भी नजर आ रहा है।

बिल्डिंग का कलर पिंक और व्हाइट है इसके आस पास मुझे बाउंड्री भी नज़र आ --

यहां पे मुझे बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी खिड़की से नजर आ--

एक साथ है दो आदमी भी खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक दूल्हा और दुल्हन नजर आ रहे है यहां--

दिखाई दे रहे है यहां पे कुछ टेबल और चेयर्स भी लगी हुई है।